छोटा छोटा फूल भी पौधा भी लगाया गया है।

हॉल है हॉल में बहुत सारा किताब और टेबुल लगा हुआ है और घर का कलर वाइट कलर है और घर के साइड में एक ठो खिड़की है और इस खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा जा सकता है।